यहां पे बहोत गुब्बारो और तिलंगियों से चिपका कर इस मंडल को सजाया भी गया है।

खेत दिखाई दे रहा है जिसमे एक जेंट्स खड़े हुए है जो कि बांध को बांधने का काम कर रहे है और वहां पे --

यहाँ पे हमें एक बोलेरो दिखाई दे रहा है जो कि सड़क पे खड़ा है और उसके अगल-बगल बहुत सारे --